बैंक के बाहर एक बड़ा सा पेड़ और छोटे छोटे पेड़ भी है।

दरवाजे के ऊपर फीमेल जनरल वार्ड लिखा हुआ है।

खेतों के बीच एक रास्ता है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रही है।

पंखा भी है और दीवार में एक जानवर के सर की मूर्ति लगाया हुआ है।

दो लाइट बल्ब भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा गोल्फ कोर्ट दिखाई दे रही है।

एक पंखा है तीन तीन लाइट बल्ब है।

के बगल में बहोत सारे छोटे छोटे पेड़ भी दिख रही है।

पोस्टर भी लगा हुआ है।

बगल मे बहोत सारे घर भी हैं।

एक चेयर भी दिखाई दे रही हैं।

दरवाजे के सामने ए_सी भी है।

यहां एक मनुष्य भी है।